घर के ईटे दिखाई दे रहे है।

पीछे की ओर बहोत सारे मशीन दिखाई दे रहे--

तस्वीर में एक बहुत बड़ा दुकान दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर शम्स सुपरमार्केट लिखा हुआ है और उसमें कुछ तस्वीरें लगे हुए हैं।

दो महिला ने कांधे में पर्स लटकाए हुए हैं।

दुकान में एक आदमी भी दिखाई दे रहा है जिसके चेहरा साफ तरह से समझ में नहीं आ रहा है।

तस्वीर में एक सलन दिखाई दे रहा है जहां पर एक व्यक्ति बैठा है।

उसके साइड में एक छोटा सा रास्ता भी दिखाई दे रहा है।

सामने तस्वीर में एक घर का बहुत लंबा बरामदा दिखाई दे रहा है।

नीचे की ओर जमीन में बहुत सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक टूल रखा हुआ है।

तस्वीर में एक इंस्ट्रूमेंट का दुकान दिख रहा है।

आईने के बगल में इलेक्ट्रिक के बोर्ड लगे हुए हैं।

क्लब के अंदर आगे एक डिजिटल बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसमें अंग्रेजी भाषा में कुछ गाना के नाम लिखे हुए हैं।

इसमें से एक का रंग काला एक रंग खैरी एक रंग हरा है।

सामने की ओर चार बेसिन दिखाई दे रहे हैं और नीचे सफेद रंग के चार टॉयलेट का पेन दिखाई दे रहा है।

कुछ पैकेट रखे हुए है।

जिसमें बीच में एक तालाब जैसे दिखाई दे रहा है।

कुछ पीले फैन और कुछ सफेद फैन और कुछ हैवेल्स कंपनी के समान दिखाई दे रहे हैं।

सामने तस्वीर में एक मंच दिखाया गया है।

मंच के ऊपर चार व्यक्ति परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहे हैं।

उसमें कुछ ब्रेड रखें हुए हैं।

इसके साइड में और एक घर दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे मोबाइल के ब्रांड के नाम लिखे हुए हैं एक का नाम वीवो एक का नाम सैमसंग --

दरवाजे से एक व्यक्ति बाहर की ओर आ रहा है।

और वह नीचे की ओर देख रहा है।

नीचे बड़ा सा तालाब जैसा दिखाई दे रहा है।

सामने तस्वीर में एक कपड़ा का शॉप दिखाया गया है जिसके ऊपर सीलिंग में तीन फैन लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर की ओर बंडल में बहुत सारे कपड़े रखे हुए दिखाई दे रहे साथ ही कुछ जैकेट और शर्ट टंगे हुए दिखाई दे रहे हैं।